ये ए.टी.एम घर है और इसमें बहुत सारा व्यवस्था किया हुआ है स्टिकर भी सट्टा हुआ है और ये स्टिकर थोड़ा-थोड़ा उखड़ा हुआ है और अंदर में कुर्सी भी रखे हुए है और यूनियन बैंक है ये।

यह बुझा रहा है कि लेने आया है और आमने -सामने बहुत सुंदर सा गेट जैसे दिख रहा है और बहुत इस साइड में कागज-वागज दो तो गिरा हुआ है।

एक मेला है जैसन बुझा रहा है यह झूला वाला लागल है और बहुत आदमी बैठे हुए हैं और यह पार्क जैसा कुछ बुझा रहा है पार्क में मेला लग्न जैसन और घर भी है।

नारियल का पेड़ जैसे बुझा रहा है और एक घर है छोटा सा छोटा सा बिल्डिंग है उसमें पेड़ भी है और ऊपर में कुछ रखा हुआ है टंगा हुआ जैसा बुझा रहा है।

-- और गाड़ी के नीचे में कुछ पर्दा जैसा दिया हुआ है और बादल का बादल किया हुआ है और बाइक बरसात का मौसम है और फूल ऊल भी --